बहुत ही मस्त नज़ारा देख रहे देख सकते हैं | सुबह सुबह बहुत ही प्यारा --

हेलो गाइस देख सकते है ये फैक्ट्री और इसमें काम चल रहा है और ये भाई साहब अपना क्या की ये कर रहे है देख सकते है बहुत ही --

मस्त लोग दिखाई दे रहा होगा आपलोगो को और ज़बरदस्त लोग देख सकते है जिसमे काफी सारे --

हेलो गाइज देख सकते है ये जिम सेंटर है और ये भाई लोग अपना-अपना जिम कर रहे है देख सकते है एक्सरसाइज कर रहे है ।

हल्ला हुआ है देख सकते है यहाँ कभी कभी मुस्लिम दिखाई दे रहा है रमजान देख सकते है ।

और गायज देख सकते है ये टाटा कंपनी है।

और ये ऑफिस है और वो गोडाउन है | देख सकते हैं काफी मस्त लुक दिखाई दे रहा होगा आप लोगो को और जबरदस्त लोग देख सकते है और इसमें --

और बहुत ही प्यारा सीन --

नीचे पेड़ो पे पानी दे रहा है आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लोग दिखाई दे रहा है।

हेलो गाएज देख सकते है यहाँ पे फल दुकान है।